अलग-अलग तरह की अपनी जगहों पर बैठे है आगे की तरफ का पानी तो साफ दिख रहा है लेकिन पीछे ऐसा लग रहा है की पानी थोड़ा मैला है क्योकि कुछ पाचे --